ये देखिए एस.बी.आई.एन.टी.एच. हैं।

सामने बाइक खड़ी हैं स्कूटी खड़ी हैं जैसा के हम देख रहे हैं।

पेड़ लगाना हमारे लिए कितना अच्छा है।

सभी से देख रहे हैं पीछे खुला मैदान है।

जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं।

दो जेंट्स खड़े हैं जो इनकी हेयर कट्टिंग कर रहे हैं।

मिला पीछे पीछे पेड़ है पीछे पीछे सूर्य भगवान निकल रहे हैं।

जो की पानी से परेशान हैं देखिए अम्ब्रेला सबका खुला हुआ हैं।

स्कूटी लेके चल रहे हैं।

ये देखिए एक मार्केट लगा हुआ है।

देखे किसी गाव का आर.डी.एफ़.सी. बैंक हैं।

जो लोग सेहर नहीं जा पाते हैं गाँव में ही बैंक खुलवाते हैं उनके लिए ये उपलब्ध होता हैं।

सड़क है उसके पीछे फिर पूरा कुहासा हुआ है ठंड का मौसम है ना इस कारण।

अब यहां पे लाइनें होती है अभी सुबह का टाइम है तो कोई स्टूडेंट वगैरह कोई नहीं आए हुए हैं।

धागे साडी के होते हैं सूट के होते हैं शॉर्ट्स के होते हैं।

हवेली ही हैं पूरा नीचे से देखो दो रास्ते बने हुए हैं दो रास्ते कट हो रहे हैं।

क्लासिस हैं ये कॉमर्स का क्लास हैं व्हाइट ब्लॅक सारे बोर्ड लगे हैं उसपे --

ये पूरे क्लासरूम को वाइट कलर से पेंट किया गया है।

यहा के चेयर्स टेबल बहुत ही प्यारे हैं।

उनको भी मालाये चढ़ाई गई हैं।

ये एयरपोर्ट हैं एयरलाइन एयरपोर्ट वहाँ एक एरोप्लेन जा रहा हैं और बाकी सारे खड़े हैं।

कोरोना आया था ना बाइस में उसका सीन हैं वहाँ का ये डॉक्टर्स हैं पूरे व्हाइट कलर के कॉस्ट्यूम में हैं।

ये कुछ खेल रहे हैं कुछ पढ़ाई कर रहे हैं कुछ कलरिंग्स कर रहे हैं बच्चे को और क्या पसंद हैं कलर करना पढ़ना।

का समय है ऊपर घर है उसकी बालकनी दिखाई दे रही है छोटे-छोटे गमले दिख रहे हैं नीचे बाइक्स खड़ी हैं।

ये देखिये ये रोड का साइड एरिया हैं वहा पे एक डॉग खड़ा हैं आगे बा स्कूटी खड़ी हैं स्कूटी के पीछे भी एक बाइक हैं।

ये देखो तव सूरज कितना सनसेट कितना प्यारा लग रहा है देखने में नीचे नदी है नदी के ऊपर उनका की परछाई आना।

पहाड़ के बीचो बीच झरना गिरना पेड़ पौधे होना कितना प्यारा सीन हैं ये हम लोग देख सकते हैं।

आलू से बहुत चीज़े बनती हैं खाई जाती हैं आलू।

से आलू में बसा होता है।

ये सीखाना भी सेहत के लिए अच्छा होता है।

देखिये घर के आंगन में तुलसी लगी हैं तुलसी के गमले को कितने प्यारे तरिके से सजाया गया हैं।

पार्लर तो जबी सभी जाते हैं जेंट्स पार्लर हैं यहाँ लेडीज़ पार्लर हैं अंदर और भी शायद मार्केटि हैं आगे गाडी दिखाई दे रही हैं ये--

ये इसमें यहां एक लड़की दिख रही है जो।

स्टार वाली लाइटिंग लगी हुई है जो लाइटिंग बहुत प्यारी।

यहां पहाड़ है पहाड़ पे झड़ना बह रहा है।

ये देखिए ये चिल्ड्रन पार्क जैसा हैं।

सीढिया स्टेर वगेरा हैं यहाँ पे कार्टून्स वगेरा लगे हुए हैं।